मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
आज दीपावली का पावन पर्व है
आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं
हमारे यहाँ कहा गया है
शुभम् करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदाम
शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते
कितना उत्तम सन्देश है
इस श्लोक में कहा है प्रकाश जीवन में सुख स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर के आता है जो विपरीत बुद्धि का नाश करके सदबुद्धि दिखाता है
ऐसी दिव्यज्योति को मेरा नमन
इस दीपावली को याद रखने के लिए इससे बेहतर विचार और क्या हो सकता है कि हम प्रकाश को विस्तार दें पॉजिटिविटी का प्रसार करें और शत्रुता की भावना को ही नष्ट करने की प्रार्थना करें आजकल दुनिया के अनेक देशों में दिवाली मनायी जाती है
विशेष बात यह कि इसमें सिर्फ भारतीय समुदाय शामिल होता है ऐसा नहीं है बल्कि अब कई देशों की सरकारें वहां के नागरिक वहां के सामाजिक संगठन दिवाली को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं
एक प्रकार से वहां भारत खड़ा कर देते हैं
साथियो दुनिया में फेस्टिवल टूरिज्म का अपना ही आकर्षण है
हमारा भारत जो कंट्री ओएफ फेस्टिवल्स है उसमें फेस्टिवल टूरिज्म की भी अपार संभावनाएँ हैं
हमारा प्रयास होना चाहिये कि होली हो दिवाली हो ओणम हो पोंगल हो बिहु हो इन जैसे त्योहारों का प्रसार करें और त्योहारों की खुशियों में अन्य राज्यों अन्य देशों के लोगों को भी शामिल करें
हमारे यहाँ तो हर राज्य हर क्षेत्र के अपनेअपने इतने विभिन्न उत्सव होते हैं दूसरे देशों के लोगों की तो इनमें बहुत दिलचस्पी होती है
इसलिए भारत में फेस्टिवल टूरिज्म बढ़ाने में देश के बाहर रहने वाले भारतीयों की भूमिका भी बहुत अहम है
मेरे प्यारे देशवासियो पिछली मन की बात में हमने तय किया था कि इस दीपावली पर कुछ अलग करेंगे
मैंने कहा था आइये हम सभी इस दीपावली पर भारत की नारी शक्ति और उनकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें यानी भारत की लक्ष्मी का सम्मान
और देखते ही देखते इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर अनगिनत इंस्पिरेशनल स्टोरीज का अम्बार लग गया
वारंगल के कोडीपाका रमेश ने NamoApp पर लिखा कि मेरी माँ मेरी शक्ति है
नाइनटीन निंटी में 1990 में जब मेरे पिताजी का निधन हो गया था तो मेरी माँ ने ही पाँचों बेटों की जिम्मेदारी उठायी
आज हम पाँचों भाई अच्छे प्रोफेशन में हैं
मेरी माँ ही मेरे लिये भगवान है
मेरे लिये सब कुछ है और वो सही अर्थ में भारत की लक्ष्मी है
रमेश जी आपकी माताजी को मेरी प्रणाम
ट्विटर पर एक्टिव रहने वाली गीतिका स्वामी का कहना है कि उनके लिये मेजर खुशबू कंवर भारत की लक्ष्मी है जो बस कंडक्टर की बेटी है और उन्होंने असम राइफल्स की अल्ल वूमेन टुकड़ी का नेतृत्व किया था
कविता तिवारी जी के लिए तो भारत की लक्ष्मी उनकी बेटी हैं जो उनकी ताकत भी है
उन्हें गर्व है कि उनकी बेटी बेहतरीन पेंटिंग करती है
उसने क्लैट की परीक्षा में बहुत अच्छी रैंक भी हासिल की है
वहीं मेघा जैन जी ने लिखा है कि नाइनटी त्वो यियर की 92 साल की एक बुजुर्ग महिला वर्षों से ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मुफ्त में पानी पिलाती है
मेघा जी इस भारत की लक्ष्मी की विनम्रता और करुणा से काफी प्रेरित हुई हैं
ऐसी अनेक कहानियाँ लोगों ने शेयर की हैं
आप जरुर पढ़िये प्रेरणा लीजिये और खुद भी ऐसा ही कुछ अपने आसपास से शेयर कीजिये और मेरा भारत की इन सभी लक्ष्मियों को आदरपूर्वक नमन है
मेरे प्यारे देशवासियो 17वीं शताब्दी की सुप्रसिद्ध कवयित्री साँची होनम्मा सांची होन्नम्मा उन्होंने 17वीं शताब्दी में कन्नड़ भाषा में एक कविता लिखी थी
वो भाव वो शब्द भारत की हर लक्ष्मी ये जो हम बात कर रहे हैं ना ऐसा लगता है जैसे कि उसका फाउंडेशन 17वीं शताब्दी में ही रच दिया गया था
कितने बढ़िया शब्द कितने बढ़िया भाव और कितने उत्तम विचार कन्नड़ भाषा की इस कविता में हैं
पैन्निदा पर्मेगोंडनू हिमावंतनु
पैन्निदा भृगु पर्चिदानु
पैन्निदा जनकरायनु जसुवलीदनू
पेन्निंदा परमेगोंडानू हिमवंतनु
पेन्निंदा ब्रूहू पर्चिदानु
पेन्निंदा जनकरायनु जासुवालेंदनु
अर्थात हिमवन्त यानी पर्वतराजा ने अपनी बेटी पार्वती के कारण ऋषि भृगु ने अपनी बेटी लक्ष्मी के कारण और राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के कारण प्रसिद्धि पायी
हमारी बेटियाँ हमारा गौरव हैं और इन बेटियों के महात्मय से ही हमारे समाज की एक मजबूत पहचान है और उसका उज्ज्वल भविष्य है
मेरे प्यारे देशवासियो 12 नवंबर 2019 यह वो दिन है जिस दिन दुनिया भर में श्री गुरुनानक देव जी का 550वाँ प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा
गुरुनानक देव जी का प्रभाव भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व मे है
दुनिया के कई देशों में हमारे सिख भाईबहन बसे हुए हैं जो गुरुनानकदेव जी के आदर्शों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं
मैं वैंकूवर वैनकूवर और तेहरान तहरान में गुरुद्वारों की अपनी यात्राओं को कभी नहीं भूल सकता
श्री गुरुनानकदेव जी बारे में ऐसा बहुत कुछ है जिसे मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ लेकिन इसके लिए मन की बात के कई एपिसोड लग जाएंगे
उन्होंने सेवा को हमेशा सर्वोपरि रखा
गुरुनानकदेव जी मानते थे कि निस्वार्थ भाव से किए गए सेवा कार्य की कोई क़ीमत नहीं हो सकती
वे छुआछूत जैसे सामाजिक बुराई के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े रहे
श्री गुरुनानक देव जी ने अपना सन्देश दुनिया में दूरदूर तक पहुँचाया
वे अपने समय में सबसे अधिक यात्रा करने वालों में से थे
कई स्थानों पर गये और जहां भी गये वहां अपनी सरलता विनम्रता सादगी उन्होंने सबका दिल जीत लिया
गुरुनानक देव जी ने कई महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राएँ की जिन्हें उदासी कहा जाता है
सद्भावना और समानता का सन्देश लेकर वे उत्तर हो या दक्षिण पूर्व हो या पश्चिम हर दिशा में गये हर जगह लोगों से संतों और ऋषियों से मिले
माना जाता है कि असम के सुविख्यात सन्त शंकरदेव भी उनसे प्रेरित हुए थे
उन्होंने हरिद्वार की पवित्र भूमि की यात्रा की
काशी में एक पवित्र स्थल गुरुबाग गुरुद्वारा है ऐसा कहा जाता है कि श्री गुरुनानक देव जी वहां रुके थे
वे बौद्ध धर्म से जुड़ी राजगीर और गया जैसे धार्मिक स्थानों पर भी गए थे
दक्षिण में गुरुनानक देव जी श्रीलंका तक की यात्रा की
कर्नाटका में बिदर की यात्रा के दौरान गुरुनानक देव जी ने ही वहां पानी की समस्या का समाधान किया था
बिदर में गुरुनानक जीरा साहब नाम का एक प्रसिद्ध स्थल है जो गुरुनानक देव जी की हमें याद भी दिलाता है उन्हीं को ये समर्पित है
एक उदासी के दौरान गुरुनानक जी ने उत्तर में कश्मीर और उसके आसपास के इलाके की भी यात्रा की
इसे सिख अनुयायियों और कश्मीर के बीच काफी मजबूत सम्बन्ध स्थापित हुआ
गुरुनानक देव जी तिब्बत भी गये जहां के लोगों ने उन्हें गुरु माना
वे उज्बेकिस्तान में भी पूजनीय हैं जहां उन्होनें यात्रा की थी
अपनी एक उदासी के दौरान उन्होंने बड़े पैमाने पर इस्लामिक देशों की भी यात्रा की थी जिसमें सौदी अरब इराक और अफगानिस्तान भी शामिल हैं
वे लाखों लोगों के दिलों में बसे जिन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ उनके उपदेशों का अनुसरण किया और आज भी कर रहे हैं
अभी कुछ दिन पहले ही करीब 85 देशों के आइटी फाइव कंट्रीज के राजदूत दिल्ली से अमृतसर गये थे
वहां उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के दर्शन किये और ये सब गुरुनानक देव जी के 550वें प्रकाशपर्व के निमित्त हुआ था
वहां इन सारे राजदूतों ने गोल्डेन टेम्पल के दर्शन तो किये ही उन्हें सिख परम्परा और संस्कृति के बारे में भी जानने का अवसर मिला
इसके बाद कई राजदूतों ने सोशल मीडिया पर वहां की तस्वीरें साझा की
बड़े गौरवपूर्वक अच्छे अनुभवों को भी लिखा
मेरी कामना है कि गुरु नानक देव जी के 550वाँ प्रकाश पर्व हमें उनके विचारों और आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की और अधिक प्रेरणा दें
एक बार फिर मैं शीश झुकाकर गुरु नानक देव जी को नमन करता हूँ
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों मुझे विश्वास है कि 31 अक्तूबर की तारीख़ आप सबको अवश्य याद होगी
यह दिन भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जन्म जयंती का है जो देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले महानायक थे
सरदार पटेल में जहाँ लोगों को एकजुट करने की अद्भुत क्षमता थी वहीँ वे उन लोगों के साथ भी तालमेल बिठा लेते थे जिनके साथ वैचारिक मतभेद होते थे
सरदार पटेल बारीक़सेबारीक़ चीजों को भी बहुत गहराई से देखते थे परखते थे
सही मायने में वे मन ओएफ डिटेल थे
इसके साथ ही वे संगठन कौशल में भी निपुण थे
योजनाओं को तैयार करने और रणनीति बनाने में उन्हें महारत हासिल थी
सरदार साहब की कार्यशैली के विषय में जब पढ़ते हैं सुनते हैं तो पता चलता है कि उनकी प्लानिंग कितनी जबरदस्त होती थी
1921 में नाइनटीन ट्वेंटी ओने में अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए देशभर से हजारों की संख्या में डेलीगेट्स पहुँचने वाले थे
अधिवेशन की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी सरदार पटेल पर थी
इस अवसर का उपयोग उन्होंने शहर में पानी सप्लाई के नेटवर्क को भी सुधारने के लिए किया
यह सुनिश्चित किया कि किसी को भी पानी की दिक्कत न हो
यहीं नही उन्हें इस बात की भी फ़िक्र थी कि अधिवेशन स्थल से किसी डेलीगेट का सामान या उसके जूते चोरी न हो जाएँ और इसे ध्यान में रखते हुए सरदार पटेल ने जो किया वो जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा
उन्होंने किसानों से संपर्क किया और उनसे खादी के बैग बनाने का आग्रह किया
किसानों ने बैग बनाये और प्रतिनिधियों को बेचे
इन बैग्स में जूते डाल अपने साथ रखने से डेलीगेट्स के मन से जूते चोरी होने की टेंशन ख़त्म हो गई
वहीँ दूसरी तरफ खादी की बिक्री में भी काफ़ी वृद्धि हुई
संविधान सभा में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिए हमारा देश सरदार पटेल का सदैव कृतज्ञ रहेगा
उन्होंने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया जिससे जाति और संप्रदाय के आधार पर होने वाले किसी भी भेदभाव की गुंजाइश न बचे
साथियो हम सब जानते है कि भारत के प्रथम गृहमंत्री के रूप में सरदार वल्लभभाई पटेल ने रियासतों को एक करने का एक बहुत बड़ा भगीरथ और ऐतिहासिक काम किया
सरदार वल्लभभाई की ये ही विशेषता थी जिनकी नज़र हर घटना पर टिकी थी
एक तरफ उनकी नज़र हैदराबाद जूनागढ़ और अन्य राज्यों पर केन्द्रित थी वहीँ दूसरी तरफ उनका ध्यान दूरसुदूर दक्षिण में लक्षद्वीप पर भी था
दरअसल जब हम सरदार पटेल के प्रयासों की बात करते हैं तो देश के एकीकरण में कुछ खास प्रान्तों में ही उनकी भूमिका की चर्चा होती है
लक्षद्वीप जैसी छोटी जगह के लिए भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी
इस बात को लोग शायद ही याद करते हैं
आप भलीभांति जानते है कि लक्षद्वीप कुछ द्वीपों का समूह है
यह भारत के सबसे खुबसूरत क्षेत्रों में से एक है
1947 में भारत विभाजन के तुरंत बाद हमारे पड़ोसी की नज़र लक्षद्वीप पर थी और उसने अपने झंडे के साथ जहाज भेजा था
सरदार पटेल को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली उन्होंने बगैर समय गंवाये जरा भी देर किये बिना तुरंत कठोर कार्यवाही शुरू कर दी
उन्होंने मुदलियार ब्रदर्स आर्कोट रामासामी मुदलियार और आर्कोट लक्ष्मणस्वामी मुदलियार से कहा कि वो त्रावणकोर के लोगों के साथ लेकर तुरंत कूच करें और वहाँ तिरंगा फहरायें
लक्षद्वीप में तिरंगा पहला फहरना चाहिए
उनके आदेश के फ़ौरन बाद वहाँ तिरंगा फहराया गया और लक्षद्वीप पर कब्ज़ा करने के पड़ोसी के हर मंसूबे देखते ही देखते ध्वस्त कर दिए
इस घटना के बाद सरदार पटेल ने मुदलियार ब्रदर्स से कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से ये सुनिश्चित करें कि लक्षद्वीप को विकास के लिए हर जरुरी मदद मिले
आज लक्षद्वीप भारत की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है
यह एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है
मुझे उम्मीद है कि आप सब भी इसके खुबसूरत द्वीपों और समुद्र तटों की यात्रा करेंगे
मेरे प्यारे देशवासियो 31 अक्तूबर 2018 का दिन जिस दिन सरदार साहब की याद में बना स्टेच्यू ओएफ यूनिटी देश और दुनिया को समर्पित किया गया था
यह दुनिया की सबसे ऊँची प्रतिमा है
अमेरिका में स्थित स्टेच्यू ओएफ लिबर्टी से भी ऊँचाई में डबल है
दुनिया की सबसे ऊँची प्रतिमा हर हिन्दुस्तानी को गर्व से भर देती है
हर हिन्दुस्तानी का सिर शान से ऊँचा उठ जाता है
आपको ख़ुशी होगी एक वर्ष में 26 लाख से अधिक पर्यटक स्टेच्यू ओएफ यूनिटी को देखने के लिए पहुँचें
इसका मतलब हुआ कि प्रतिदिन औसतन साढ़े आठ हज़ार लोगों ने स्टेच्यू ओएफ यूनिटी की भव्यता का दर्शन किया
सरदार वल्लभभाई पटेल के प्रति उनके ह्रदय में जो आस्था है श्रद्धा है उसको प्रकट किया और अब तो वहाँ कैक्टस गार्डेन बटरफ्लाई गार्डेन जंगल सफारी चिल्ड्रेन न्यूट्रीशन पार्क एकता नर्सरी ऐसे अनेक आकर्षण के केंद्र लगातार विकसित होते चले जा रहे हैं और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है और लोगों को रोज़गार के नएनए अवसर भी मिल रहे हैं
और आने वाले पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई गाँव वाले अपनेअपने घरों में होम स्टे की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं
होम स्टे फैसिलिटीज उपलब्ध कराने वाले लोगों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दी जा रही है
वहाँ के लोगों ने अब ड्रैगन फ्रूट की खेती भी शुरू कर दी है और मुझे यकीन है कि जल्द ही ये वहाँ के लोगों की आजीविका का प्रमुख स्त्रोत भी बन जायेगा
साथियों देश के लिए सभी राज्यों के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए ये स्टेच्यू ओएफ यूनिटी एक अध्ययन का विषय हो सकता है
हम सब इसके साक्षी हैं कि कैसे एक साल के भीतरभीतर एक स्थान विश्व प्रसिद्ध टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित होता है
वहाँ देश विदेश से लोग आते हैं
ट्रांसपोर्ट की ठरहने की गाइड्स की इकोफ्रेंडली व्यवस्थायें एककेबाद एक अपने आप बहुत सारी व्यवस्थायें विकसित होती चली जा रही हैं
बहुत बड़ी इकोनॉमी डेवलप हो रही है और यात्रियों की आवश्यकता के अनुसार लोग वहाँ सुविधाएँ पैदा कर रहे हैं
सरकार भी अपनी भूमिका निभा रही है
साथियों कौन हिन्दुस्तानी होगा जिसको इस बात का गर्व नहीं होगा कि पिछले दिनों टाइम मैगज़ीन ने दुनिया के 100 महत्वपूर्ण टूरिस्ट डेस्टिनेशन में स्टेच्यू ओएफ यूनिटी को भी अहम् स्थान दिया है
मुझे आशा है कि आप सभी लोग अपने कीमती समय से कुछ वक़्त निकाल कर स्टेच्यू ओएफ यूनिटी देखने तो जाएंगे ही लेकिन मेरा आग्रह जो है कि हर हिन्दुस्तानी जो यात्रा करने के लिए समय निकालता है वह भारत के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस परिवार के साथ करें जहाँ जाए वहाँ रात को रुकें यह मेरा आग्रह तो बरक़रार है ही है
साथियो जैसा कि आप जानते है 2014 से हर साल 31 अक्तूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है
यह दिन हमें अपने देश की एकता अखंडता और सुरक्षा की हर कीमत पर रक्षा करने का सन्देश देता है
31 अक्तूबर को हर बार की तरह रुन फोर यूनिटी का आयोजन भी किया जा रहा है
इसमें समाज के हर वर्ग के हर तबके के लोग शामिल होंगे
रुन फोर यूनिटी इस बात का प्रतीक है यह देश एक है
एक दिशा मे चल रहा है और एक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है
एक लक्ष्य एक भारत श्रेष्ठ भारत आई
पिछले पांच साल देखा गया है न सिर्फ़ दिल्ली लेकिन हिन्दुस्तान के सैकड़ों शहरों में केंद्र शासित प्रदेशों में राजधानियों में जिला केन्द्रों में छोटेछोटे टियरटूटियर थ्री सिटी में भी बहुत बड़ी मात्रा में पुरुष हो महिला हो शहर के लोग हों गाँव के लोग हों बालक हो नौजवान हो वृद्ध लोग हों दिव्यांगजन हो सब लोग बहुत बड़ी मात्रा में शामिल हो रहे हैं
वैसे भी आजकल देखें तो लोगों में मैराथन को लेकर के एक शौक और जूनून देखने को मिल रहा है
रुन फोर यूनिटी भी तो एक ऐसा ही अनोखा प्रोविजन है
दौड़ना मनमस्तिष्क और शरीर सबके लिए फायदेमंद है
यहाँ तो दौड़ना भी है फिट इंडिया के भाव को चरितार्थ भी करते हैं साथसाथ एक भारत श्रेष्ठ भारत ये परपज से भी हम जुड़ जाते हैं
और इसलिए सिर्फ शरीर नहीं मन और संस्कार भारत की एकता के लिए भारत को नई उचाईयों पर पहुँचाने के लिये
और इसलिए आप जिस भी शहर में रहते हों वहाँ अपने आसपास रुन फोर यूनिटी के बारे में पता कर सकते हैं
इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है runforunitygovin
इस पोर्टल में देशभर की उन जगहों की जानकारी दी गई है जहाँ पर रुन फोर यूनिटी का आयोजन होना है
मुझे उम्मीद है कि आप सब 31 अक्तूबर को ज़रूर दौड़ेगें भारत की एकता के लिए ख़ुद की फिटनेस के लिये भी
मेरे प्यारे देशवासियो सरदार पटेल ने देश को एकता के सूत्र में बांधा
एकता का ये मंत्र हमारे जीवन में संस्कार की तरह है और भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में हमें हर स्तर पर हर डगर पर हर मोड़ पर हर पड़ाव पर एकता के इस मंत्र को मज़बूती देते रहना चाहिए
मेरे प्यारे देशवासियो देश की एकता और आपसी सदभावना को सशक्त करने के लिए हमारा समाज हमेशा से बहुत सक्रिय और सतर्क रहा है
हम अपने आसपास ही देखें तो ऐसे कई उदाहरण मिलेगें जो आपसी सदभाव को बढ़ाने के लिए निरंतर काम करते रहे हैं लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि समाज के प्रयास उसका योगदान स्मृति पटल से बहुत जल्द ओझल हो जाता है
साथियो मुझे याद है कि सितम्बर 2010 में जब राम जन्मभूमि पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया
जरा उन दिनों को याद कीजिये कैसा माहौल था
भांतिभांति के कितने लोग मैदान में आ गये थे
कैसेकैसे इंटरेस्ट ग्रुप्स उस परिस्थितियों का अपनेअपने तरीके से फ़ायदा उठाने के लिए खेल खेल रहे थे
माहौल में गर्माहट पैदा करने के लिए किसकिस प्रकार की भाषा बोली जाती थी
भिन्नभिन्न स्वरों में तीखापन भरने का भी प्रयास होता था
कुछ बयानबाजों ने और कुछ बड़बोलों ने सिर्फ और सिर्फ खुद को चमकाने के इरादे से न जाने क्याक्या बोल दिया था कैसीकैसी गैर ज़िम्मेवार बातें की थी हमें सब याद है
लेकिन ये सब पांच दिन सात दिन दस दिन चलता रहा लेकिन जैसा ही फैसला आया एक आनंददायक आश्चर्यजनक बदलाव देश ने महसूस किया
एक तरफ दो हफ्ते तक गर्माहट के लिए सब कुछ हुआ था लेकिन जब राम जन्मभूमि पर फैसला आया तब सरकार ने राजनैतिक दलों ने सामाजिक संगठनों ने
सिविल सोसाइटी ने सभी सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों ने साधुसंतों ने बहुत ही संतुलित और संयमित बयान दिए
माहौल से तनाव कम करने का प्रयास
लेकिन आज मुझे वो दिन बराबर याद है
जब भी उस दिन को याद करता हूँ मन को खुशी होती है
न्यायपालिका की गरिमा को बहुत ही गौरवपूर्ण रूप से सम्मान दिया और कहीं पर भी गर्माहट का तनाव का माहौल नहीं बनने दिया
ये बातें हमेशा याद रखनी चाहिए
ये हमें बहुत ताकत देती है
वो दिन वो पल हम सबके लिए एक कर्त्तव्यबोध है
एकता का स्वर देश को कितनी बड़ी ताकत देता है उसका यह उदाहरण है
मेरे प्यारे देशवासियो 31 अक्टूबर हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी की हत्या भी उस दिन हुई थी
देश को एक बहुत बड़ा सदमा लगा था
मैं आज उनको भी श्रद्दांजलि देता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो आज घरघर की अगर कोई एक कहानी सब दूर सुनाई देती है हर गाँव की कोई एक कहानी सुनाई देती है उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम हिंदुस्तान के हर कोने से एक कहानी सुनाई देती है तो वो है स्वच्छता की
हर व्यक्ति को हर परिवार को हर गाँव को स्वच्छता के सम्बन्ध में अपने सुखद अनुभवों कहने का मन करता है क्योंकि स्वच्छता का यह प्रयास सवासौ करोड़ हिन्दुस्तानियों का प्रयास है
परिणाम के मालिक भी सवासौ करोड़ हिन्दुस्तानी ही हैं
लेकिन एक सुखद अनुभव और रोचक अनुभव भी है
मैंने सुना मैं सोचता हूँ मैं आपको भी सुनाऊं
आप कल्पना करिये विश्व का सबसे ऊँचा बैटलफील्ड जहाँ का तापमान शून्य से 5060 डिग्री माइनस में चला जाता है
हवा में आक्सीजेन भी नाम मात्र की होती है
इतनी विपरीत परिस्थितियों में इतनी चुनौतियों के बीच रहना भी किसी पराक्रम से कम नहीं है
ऐसे विकट हालात में हमारे बहादुर जवान न सिर्फ सीना तान कर देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं बल्कि वहां स्वच्छ सियाचिन अभियान भी चला रहे हैं
भारतीय सेना की इस अद्भुत प्रतिबद्धता के लिए मैं देशवासियों की ओर से उनकी सराहना करता हूँ
कृतज्ञता प्रकट करता हूँ
वहां इतनी ठण्ड है कि कुछ भी डिकंपोज होना मुश्किल है
ऐसे में कूड़ेकचरे को अलग करना और उसका प्रबंधन करना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण काम है
ऐसे में ग्लेसियर और उनके आसपास के इलाके से 130 टन और उससे भी ज्यादा कचरा हटाना और वो भी यहाँ के फ्रेजाइल इकोसिस्टम के बीच कितनी बड़ी सेवा है ये यह एक ऐसा इकोसिस्टम है जो हिम तेंदुए जैसी दुर्लभ प्रजातियों का घर है
यहाँ आईबेक्स और ब्राउन बियर्स जैसे दुर्लभ जानवर भी रहते हैं
हम सब जानते हैं कि यह सियाचिन एक ऐसा ग्लेसियर है जो नदियों और स्वच्छ पानी का स्त्रोत है इसलिए यहाँ स्वच्छता अभियान चलाने का मतलब है उन लोगों के लिए स्वच्छ जल सुनिश्चित करना जो निचले इलाकों में रहते हैं
साथ ही नुबरा और श्योक जैसी नदियों के पानी का उपयोग करते हैं
मेरे प्यारे देशवासियो उत्सव हम सबके जीवन में एक नई चेतना को जगाने वाला पर्व होता है
और दीवाली में तो खासतौर पर कुछनकुछ नया खरीदना बाजार से कुछ लाना हर परिवार में कमअधिक मात्रा में होता ही होता है
मैंने एक बार कहा था कि हम कोशिश करें लोकल चीजों को खरीदें
हमारी जरुरत की चीज हमारे गाँव से मिलती है तो तहसील में जाने की जरुरत नहीं है
तहसील में मिलती है तो जिले तक जाने की जरुरत नहीं है
जितना ज्यादा हम अपने लोकल चीजें खरीदने का प्रयास करेंगें गांधी 150 अपने आप में एक महान अवसर बन जाएगा
और मेरा तो आग्रह रहता ही है कि हमारे बुनकरों के हाथ से बना हुआ हमारे खादी वालो के हाथ से बना हुआ कुछनकुछ तो हमें खरीदना ही चाहिए
इस दीवाली में भी दीवाली के पहले तो आपने बहुत कुछ खरीद कर लिया होगा लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं वो सोचते हैं कि दिवाली के बाद जायेंगें तो शायद थोड़ा सस्ता भी मिल जाएगा
तो बहुत लोग होंगे जिनके अभी खरीदी बाकी भी होगी
तो दीपावली की शुभकामनाओं के साथसाथ मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आओ हम लोकल खरीदने के आग्रही बनें स्थानीय चीजें खरीदें
देखिये महात्मा गाँधी के सपने को सिद्ध करने में हम भी कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं
मैं फिर एक बार इस दीपावली के पावन पर्व पर आपको बहुतबहुत शुभकामनाएं देता हूँ
दीवाली में हम भांतिभांति के पटाखे उसका उपयोग करते हैं
लेकिन कभीकभी असावधानी में आग लग जाती है
कहीं इंजुरी हो जाती है
मेरा आप सब से आग्रह है कि खुद को भी संभालिये और उत्सव को बड़े उमंग से मनाइये
मेरी बहुतबहुत शुभकामनाएं
बहुतबहुत धन्यवाद